एक मैडम खड़ी है जिसने जिनकी चोटी सामने दिख रही है एक साइकिल भी नज़र आ रही हैसफ़ेद कलर का बादल भी दिख रहा है।

यहा बैनर दिख रहा है दिखाई दे रहा है और एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा जिसके सामने आजू बाजु बहुत सरे घास लगे दिखाई दे रहा है ऊपर लाइट लगी दिखाई दे रही है।